यहां पे रोड पर रोड है रोड में काफी वाहन हैऔर यहां पर एक द्वार भी बनाया गया है रोड मे।

साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है वहां पर बहुत साड़ी साइकिल हैं छोटी साइकिल हैं बड़ी साइकिल हैं सामने कार खड़ी हैं लोग खड़े हैं।